और हमें एक व्हाइट कलर का घर एक रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

उसके भी पीछे बगल में ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ हैं।

ये रात का सीन पता चल रहा है जिसपे येलो कलर की बड़ी बड़ी दिवाले और एक बीच में येलो कलर के पुतले लगे हुए हैं जो कि दीवालो को सहारा दे रहे है।

ये कुछ क्लासिकल डांस करने वाली लड़कियों का ग्रुप दिख रहा है जिसमें लड़कियों ने रेड एंड ब्ल्यू कलर के ड्रेस पहनी हुई है।

ये किसी एक पूजा या प्रे के टाइम का सीन दिख रहा है जिसमें एक आदमी हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ है।

दो छोटी लड़कियां हाथ में कै जलते हुए कैंडल को लेके चलती हुई दिख रही हैं।

बगल में एक्स एंड वाई कलर के दो अल्फाबेट्स भी दिख रहे है।

ये एक गार्डन का सीन लग रहा है जहां पर रेड कलर के टाइल्स है।

और ढेर सारे लोग बैठे हुए चेयर्स पे दिख रहे हैं।

और ट्रेडमिल कुछ प्लास्टिक में अभी भी रैप है।

एक आदमी ने कैप भी लगाई हुई है और एक आदमी ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

ये भी एक स्विमिंग पूल का सीन है जहां पर बाहर व्हाइट एंड ब्लैक एंड रेड कलर की कारें खड़ी हैं।

यहां पे एक वाइट कलर की कार है एक ई रिक्शा है।

ऊपर वुर भूसे की शेड भी दिख रही है।

पुरानी अलमारी दिख रही है जिसमें ताला लगा हुआ है।

एक आदमी ने डार्क रेड एंड ब्लै डार्क रेड कलर की शर्ट एंड ब्लैक कलर की पैंट पहना हुआ है।

एक बाइक में ब्लैक कलर का हेलमेट भी टंगा हुआ--

ये एक किसी बोटैनिकल गार्डन का सीन लगा रहा है जिसमें पौधे उगाए जा रहे है।

साथ साथ कुछ नए पेपर के डब्बे रखे हुए हैं जो की पूरी तरीके से पैक हैं।

कुछ दवाइयां बॉटल्स में है कुछ दवाइयां कागज के बॉक्स में हैं और उनके आस पास ढेर सारे लोग खड़े हुए दिख--

कुछ लोग बैठे हुए हैं और सभी लोगों ने ठंडी के कपड़े पहने हुए हैं।

इस फोटो में हमें एक ऑटोमोबाइल कार शॉप दिख रही है।

इसमें ढेर सारी कारें खड़ी हैं और कार रिपेयरिंग का काम चल--

व्हाइट कलर की टाइल्स लगे हुए फ्लोर भी हमें दिख रहा है।

व्हाइट कलर की सीलिंग है एंड रेड कलर की ढेर सारी चेयर्स रखी हुई दिख रही हैं।

न्यू बाउंड्री भी दिख रही है बनी हुई ईंटे से।

पीछे बैनर में लिखा हुआ है मटका कुल्फी फालूदा।

बगल में एक दुकान है जिसपे ईट डॉट को लिखा हुआ दिख रहा है।

आसपास दो बड़े बड़े लाइट ब्राउन कलर के सोफे लगे हुए दिख रहे है।

स्ट्रीट लाइटें दिख रही हैं छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें ढेर सारी टॉय बाइक दिख रही है।

और व्हाइट कलर की लाइटे जलती हुई दिख रही--

बीच में कुछ जिम के हैवी मेटल प्लेट्स रखे हुए दिख रहा है।

ऊपर सीलिंग का कलर येलो कलर का है कुछ लाइटें भी जल रही हैं वाइट कलर की।

और एक छोटा बच्चा खड़ा भी दिख रहा है और दूर दो कपल भी बैठे हुए दिख रहे हैं।